भूरे रंग के बहोत सारे पिलर नजर आ रहे है।

और लोग इधर से उधर जाते हुए दिख रहे हैं।

लाइट जलती हुई दिख रही है।

उसका रंग सफेद और नीले रंग का है।

ऊपर दीवार की तरफ रंग बिरंगे--

इस दृश्य में दो आदमी दिख रहे हैं।

पीछे की तरफ पेड़ और पौधे--

इस दृश्य में सामने की तरफ बहुत सारी गाड़ियां--

इस दृश्य मे सामने की तरफ एक इमारत नजर आ रही--

उसके बाहर सफेद रंग से कुछ लिखा हुआ है।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

बहुत ही बड़े बड़े बहुत सारे पेड़ और पौधे--

इस दृश्य में सामने की तरफ पीले रंग के बोर्ड पर काले रंग से कुछ लिखा हुआ है।

टाइल्स लगी हुई हैं। सामने की तरफ दो खिड़कियां नजर आ रही हैं।

तरफ बहुत ही बड़े बड़े पेड़ और पौधे नजर आ रहे हैं उसके पीछे बिल्डिंग दिख रही है।

लाल काले रंग से कुछ लिखा हुआ है।

एक लकड़ी का दरवाजा नजर आ रहा है।

पिजड़े में बंद हुआ दिख रहा है।

इस दृश्य में सामने की तरफ दो बच्चे झूला झूल रहे हैं।

छत की तरफ टीन का सेट लगा हुआ है जिस--

घर बनाते हुए नजर आ रहे हैं और सामने की तरफ एक आदमी ने--

सब्जियां नजर आ रही हैं सामने की तरफ हरे रंग के नींबू रखे हुए हैं।

और एक इंसान ने पिंक रंग का--

नीले रंग से कुछ लिखा हुआ दिख रहा है।

छह डैम के बहुत ही बड़े बड़े--

इस दृश्य में सामने की तरफ लाल रंग के बोर्ड पर सफेद रंग से कुछ लिखा हुआ है और --

ने की तरफ एक स्टेज नजर आ रहा है जो--

आदमी ने बैंगनी रंग का शर्ट पहना है।

इस दृश्य में सामने की तरफ काले रंग के बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ--